यह एक नेचर हैंडस्केप है इसमें दो पहाड़ दिख रहा है इसके ऊपर खुबशूरत बादल दिख रहे है जिन्हें देख के ऐसा लग रहा हे बारिश होने वाली है और खेत भी है और बहुत सारे पेड़ भी है।

यह एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है यहाँ पर जो मिरर लगा हुआ है वो बहोत सुंदर है यहाँ पे दीवारों को बहोत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है पर यहाँ पर कोई नहीं है अभी।